दो-तीन रंगो का मिश्रण है नीला नारंगी पीला सफ़ेद आदि घर के नीचे हिसले मे एक दूकान है दूकान के बाहर कुछ बोरिया रखी हुई है दूकान मे अच्छा खासा सामान टंगा हुआ है और उसके पर एक सिलेंडर भी रखा है।

नूडल्स तेल पानी आदि वगेरा-वगेरा रखे हुए दिख रहे है ये सभी चीजे लटकी हुई और अपनी जगह पे जमी हुई है।

चित्र कपड़ो के दुकान से लिया गया है इस चित्र मे अलग अलग प्रकारों के कपडे रखे दिख रहे है कुछ आ लडके खड़े दिख रहे है।

एंजॉयमेंट का दिन बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरती के साथ कैरेबियन को कलर किया गया है आसपास हरे रंग के पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।